टेबल रखा है जिसके ऊपर कुछ मोमबत्ती जल रही है | पीछे एक सफ़ेद कलर की कुर्सी रखी हुई है |

यह एक कॉरिडोर दिख रहा है इसकी बिल्डिंग का कलर वाइट दिख रहा है फर्श का कलर ब्राउन है।

जो कि चारा खा रही है गाय के गले में लाल रंग की रस्सी बंधी हुई है।

यह एक बुके दिखाई दे रहा है जो कि लाल गुलाब से बना हुआ है जिसमे बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए --